लाइट की व्यवस्था के बीच हो रहा है देखने से ऐसा मालूम चलता है किसी स्टेज पर यह प्रोग्राम की कलाकारी हो रही--

दिखाई दे रही है जिसमे एक गुंबजनुमा--

काफी पुराना और ऐतिहासिक यह मंदिर हैं क्योंकि मंदिर की बनावट बिल्कुल पूर काल की दिखाई दे रही है जहां पर बहुत पहले के लोग इस तरह के मंदिरों का निर्माण किया करते थे यह काफी ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर है।

ऐसा एक बोर्ड पर लिखा हुआ है।

फोर व्हीलर या फिर टू व्हीलर गाड़ियों का--

जो एक दुकान के बाहर लगे हुए बोर्ड पर लिखा हुआ है वहां एक कांटेक्ट नंबर भी दिया गया है।

हवन करने की कुंड बनाए गए हैं जिसमें हवन करने का कुंड की संख्या आँखों से देखने पर यहाँ पर दिखाई देने पर लगभग दस से बीस हवन कुंड दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार लग रहा है किसी योग का ही यह दृश्य है।

मल्टीमीडिया स्टेशन का यह दृश्य दिखाई देता है जीसमें--

वहां पर आंखों का डॉक्टर उस मरीज की आंखों की जांच करता है उस के ऊपर बैठा कर और मशीन की जांच आंखों की जांच करने वाला कुछ मशीन भी दिखाई दे रहा है।